यहां पर हमें कुछ चित्र भी दिखाई दे रहे हैं।

हमें यहां एक आदमी बैठा हुआ दिख रहा है।

हमें यहां पर काफी सारे हैंगर्स में लगाए हुए लड़कियों के शूट दिखाई दे रही है।

यहां एक हमें इंजीनियर भी दिख रहा है।

यहां पर हमें बादल आए हुए नजर आ रहे है।

हमें यहां कुछ लोग बैठे हुएं भी दिखाई दे रहें हैं यहां एक क्लासरुम हैं।